एक तो इधर बहुत बड़ा टाइप मैदान है। क्रिकेट खेलते हैं लोग यहाँ और इसके आसपास क्रिकेट खेलते हैं और यहाँ पे बहुत सारे घर हैं। दो-दो मंजिले तीन-तीन मंजिले के हैं।

कई पेड़ है। कॉफी रखा हुआ है हाथ में और यहाँ घास दिखाई दे रहा है यहाँ घर है बहोत सुंदर दिखाई दे रहे है। पहाड़ो की लोकेशन है बहुत अच्छा --